यहां पे बहोत सारे बल्ब लग रहे हैं सफेद कलर के।

ऊपर आसमान दिख रहा है साइड में एक पेड़ दिख रहा है आदमी के पास एक दिख रही है।

साइड में गोरा आदमी दिख रहा है और उसने एक लोहे का जाल बना हुआ है।

जिसके अंदर मुर्गे है और मुर्गे के ऊपर एक और--

इस फोटो में एक बिल्डिंग है उसमें काले कलर के शीशे लगे हुए हैं लाल रंग हो रहा है पीला रंग हो रहा है सफेद रंग हो रहा है।

इस फोटो में खोर दिख रही है एक काले कलर की गाय दिख रही है।

एक गाय और साइड खड़ी हुई है वहां पे घास इकट्ठा हो रहा है।

गाय ने नीचे घास खिला रखा है।

यहां पे तार भी लग रहे हैं। यहां पे नीला पर्दा भी लग रहा है।

एक आदमी बैठा हुआ है दो आदमी उस साइड खड़े हुए है परे से दो गाड़ियां आ रही है।

इस फोट इस दुकान में फोटो फ्रेम है और यहां पर एक लाइट लग रही है और नीचे एक मेज रखी हुई है।

उसके ऊपर फोनपे के बार कोड़ लगे हुए है और एक काली कुर्सी रखी हुई है नीचे फर्श बिछा हुआ है।

और एक बलफ लग रहा है स्टैंड लग रहा है।

इसने लाल कपड़े पहने हुए हैं यहां पे दो बाइक खड़ी हुई है।

नीचे गड्ढे हो रहे हैं एक लाल बॉक्स रख--

और यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और यहां पे खंभे पे छोटा सा पीला कलर हो रहा--

बाहर ईंट पड़ी हुई है। बाहर मकान भी दिख रहा है।

इस फोटो मे एक बैंकेट हॉल है। ऊपर लड़ी लग रही है और बलब लग रहे हैं। नीचे डस्टबिन रखे हुए हैं। मेज रखी हुई है। मेज के ऊपर प्लेट रखी हुई है।

और पानी पटा के रखे हुए हैं खाने का और कुछ सामान रखा हुआ है।

और इस हरे बोर्ड की तरफ एग्जिट लिख रहा है नीचे टाइल लग रही है।

वह कुछ कर रहा है यहां पे झाड़ी भी दिख रही है।

और बहोत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं यहां पर साइड में एक बोर्ड लग रहा है।

और एक हाथ दिख रहा है और इसमें दो लड़की दिख रहे हैं।

और उस हाथ में उसका नखून दिख रहा है नीचे धरती दिख रही है मछली की मूंछें दिख रही है।

इस फोटो में एक मेज रखी हुई है सफेद कुर्सी रखी हुई है उनके ऊपर आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी ने गुलाबी बुशर्ट पहन रखी है।

और एक नो लोहे की नाल लग रही है और जंगला है। जंगले में कुछ दिख रहा है।

बैंगन रखे हुए हैं गाजर रखी हुई है।

और पेड़ लगे हुए हैं एक बाइक खड़ी हुई है एक लाल बाइ--

ने पीले कलर की टोपी पहन रखी है पीछे मकान बन रहा है।

यहां पे फिटिंग भी हो रही है एक स्टूल रखा हुआ है पीछे एक और आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पर एक कमरा है कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ है काले कलर का मेज पे।

और पीछे फोटो लग रहा है जिस पर चौदा फरवरी दो हज़ार बारह लिखा हुआ है।

यह एक मंच है नीचे मैट बिछ रहा है हरे कलर का मैट पर कुछ पीले फूल--

वहां पे एक कुर्सी रखी हुई है डस्टबिन रखा हुआ है साइकिल खड़ी हुई है।

और तीन चार बॉक्स रखे हुए हैं एक नीला बॉक्स रखा हुआ है एक आदमी की चप्पल दिख रही है।

इस फोटो में एक ऑफिस दिख रहा है जिसमें सफेद कलर हो रहा है।

नीचे टाइल लग रही है दीवार पे भी टाइल लगा रही है।

दो गिलास रखे हुए हैं पीछे एक और कुर्सी रखी हुई है।